यहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर है उस मंदिर के साइड मे पार्क है पार्क मे बड़ा सा गेट लगा हुआ है पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक ईस्टेज दिख रहा है वह स्टेज पर एक लड़की भरतनाट्यम डांस कर रही है बेलून्स से डेकरैशन है और रिबीनस हेवी --

यहाँ पर एक कार खड़ी है जिसकी सुधार रही है।

एक लड़की भरतनाट्यम डांस कर रही है।

यहाँ पर एक बड़ा मंदिर दिख रहा है उस मंदिर मे काली जी की मूर्ति है।